जिसको अलग-अलग कलर से प्रिन्ट किया गया है।

और उसके सामने दो कंप्यूटर एक टेलीफोन रखा हुआ है और तीन लोग अपना काम करवाने के लिए उसके पास आये है।

यह पर मेरे सामने एक इमेज दिखाई दे रहे है जो की एक खाली किसी जंगल की है जिसके बीचो बीच बहुत सारे लोग ऑफिसर्स लोग ढेर लगा खड़े हुए है।

चर्च के बाहर बहुत सरे लोग खड़े हुए है जिसमे से सिस्टर्स लोग वाइट और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए है और बाकि लोग अलग अलग कलर के।

यहाँ मेरे सामने एक फोटो दिखाई दे रही है जिसमे टीचरस लोग बच्चों का स्वागत करते हुये दिख रहे हैं।

यह पे एक आदमी बैठ के अपने बाल कटवा रहा है। एक लड़के से और उसी के बगल में एक दूसरा आदमी भी खड़ा हुआ है। जमीन पर बहुत सरे बाल गिरे हुए है और शीशो में बहुत सरे प्रोडक्ट्स रखे हुए है।

और यह अलग अलग तरीके की पोषक पहने हुए है। जैसे कुछ के हाथ में लकड़ी का ड्रम और सर पे मोर की पंके पहने हुआ है।